उदन के बाहर एक बहुत बड़ा घर भी देख रही है।

बहुत सारे लोग हैं जो बैठकर रेस्टूरा में खाना खा रही है।

और काना की मूर्ति और दो मयूर भी देख रहे हैं और बहुत सारे पौधे भी हैं।

एक लोग गाड़ी धो रही है सामने बिल्डिंग भी है पौधे भी है।

मंदिर के बाहर बहुत सारे पौधे भी है।

बहुत सारे बाइक है साइकिल है और एक ड्रेजर भी है।

तीन तला का बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे पौधे भी हैं।

बड़े-बड़े पौधे भी है और एक लोग बदल जा रही है।

इस छबी में एक शादी वाली छवि दिखा रही है।